इसके ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है हरि हॉस्पिटल ।

यहां कुछ दुकान है जिनमे सामान रखा हुआ है।

ऊपर कुछ लाइट भी लगी है।

जिसमें छोटी छोटी अलमारी बनी है।